और बोर्ड के पास में नीचे एक उनका टैंकर भी खड़ा हुआ है जो डीजल और पेट्रोल लेकर आता है।

बने हुए हैं और यह कमरे और दूसरी साइड में बनी हुई दीवार सरकारी लग रही है।

और इसके बाहर एक तिरंगा भी लगा हुआ है जो भारत देश का नजर आ रहा है।

पानी से भी भरी हुई है और दूर दोनों साइड मकान भी बने हुए नजर आ रहे हैं।

और इस स्कूल की दीवार पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चित्रकारी बनी हुई है।

बहोत सारी बाइके बाहर खड़ी हुई है और दोनों साइड पेड़ भी नज़र आ रहे है और यह बिल्डिंग --

दो मंजिले हैं और इसके गेट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और अंदर भी कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

ये फोटो किसी गाड़ी की नजर आ रही है।

यह फोटो किसी एक बैंक या अन्य कोई कार्यालय की नजर आ रही है।

यह फोटो एक कॉलेज की है जिसका नाम है एस_आर_जे रामपुरिया --

और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है और दुकान के अंतर्गत एक काउंटर भी लगा हुआ है।